मंदिर के सामने कुछ गड़िया खड़ी हैं और कुछ स्कूटी याँ भी हैं।

आदमी चश्मा पहना हुआ हैं। टी शर्ट पहना हुआ हैं। और पेरो पर जूते पहने हुए हैं। और लोवर पहने हुए हैं।

मंदिर हैं। जो कि ख्रिस्तन मंदिर हैं। चारों तरफ पोस्टर लगी हुई हैं। कुछ मूर्ति लगी हुई हैं। चारों तरफ बोहोत सारे लोग हैं। सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं। जो कि पुस्तक पढ़ रहे हैं।

एक कंपनी जिसमें चारों तरफ मिट्टी है कुछ बड़ी-बड़ी फैक्ट्री है जो की टीने की बनी हुई है। कुछ वर्कर्स लोग हैं।

जो कि किराने के दुकान है कुछ समान रखे है जो कि बाहर है बोरी में मकान है मकान एक मंजिला है।

एक ग्राउंड है जिसमें बहुत सारे लड़के है जो पंक्ति में खड़े हैं सामने एक सर है जो की उनको रहा है सामने एक झंडा है जो कि है।

पिछे बहुत बड़े बड़े मकान है जो की स्कुल का है और उसमें खिड़कियाँ हैं उसमें जाली लगी है कुछ पेड़ पीछे है।